यहाँ पे कई सारी पक्षियाँ हैं।

ढेर सारे डम्ब्ल रखे हुए हैं।

कई सारे लोग बैठे हुए हैं।

और सभी तरह-तरह के योगा कर रहे हैं।

यह एक बाजार है। यहाँ पे एक व्यक्ति लाल रंग के बाइक पे बैठा हुआ है।

नीले शर्ट में एक व्यक्ति खड़ा है। ये सैलून है।

भगवान गणेश की मूर्ति है।

नीले या पीले रंग का रुम्भारा है। यहाँ पे ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं।

जहाँ पर ढ़ेर सारे लोग खेल रहे हैं।